सामने हमको दीवार दिख रहा है जिसमें वाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

चॉकलेट कलर का और गोल्डन कलर पेंट किया हुआ है पंखा दिख रहा है।

पाइप दिख रही है खिड़की दिख रहे हैं दरवाजे दिख रहे हैं दिवार दिख रहा है।

अ एक हॉल है छत दिख रही है दीवार दिख रही है व्हाइट कलर का पेंट पोता हुआ ।

बादल दिख रहा है तार दिख रहे हैं।

मेंस पार्लर लिखा हुआ है अंदर कुर्सी लगी रखी हुई है।

और कांच के दरवाजे लगे हुए दिख रहे है दिवाल दिख रहा है ग्रीन कलर का।

अ येलो कलर का पिंक कलर और पर्पल कलर का पेंट किया हुआ है।

कुर्सीयाँ रखी हुई हैं ड्रॉस बने हुए हैं जिसमें बहुत सारा सामन रखा हुआ है।

एक ग्राउंड दिख रहा है बहोत बड़ा जिसमें हल्की-हल्की घास उगे हुए दिख रहे है रेलिंग दिख रही है ।